छवि में एक कमरे को दिखाया गया है जो कि सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। कमरा काफी नया लग रहा है और ग्रीन और वाइट के बलून --

मैदान बिल्कुल साफ है। पीछे पेड़ लगे हुए हैं। पीछे कोई लोग नहीं हैं। आस-पास भी कोई लोग नहीं हैं।

नीचे बहुत सारे दुकानें और टेंट्स लगे हुए हैं। जिसके नीचे बहुत सारे जूट के बैग रखे हुए हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है।

इस फोटो में एक काउंटर बना हुआ है जिसके ऊपर टेलीफोन वगैरा रखे हुए है। सीढ़ी ऊपर जाती दिख रही है।